और ऊपर की तरफ छोटे छोटे से द्वार बने हुऐ है और यह कुछ लगभग दो मंज़िल का ऊंचाई है।

किसी ग्रामीण क्षेत्र मे हम यहाँ खेती देख सकते हैं। यह खेती पत्ता गोबी वो सब्जी की है और यह बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही है।

और सुबह का मौसम हो रहा है। आसमान से रोशनी आ रही है और यहाँ हमें कोई भी मनुष्य नही दिखा रहा है। बड़ा ही शांति का माहौल है।

और यहाँ दूर तक कोहरा -कोहरा दिख रहा है। अवश्य ही सर्दियों का मोसम है और यहाँ हमें कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है।

हम कई प्रकार के फूल देख सकते हैं और यह किसी फूलों की दुकान है और यहाँ रात का समय हो रहा है।